दरवाजा लगा हुआ है।

पानी के अंदर छोटे छोटे बत्तखे दिख रही है।

हमे यहां पाँच दरवाजा नजर आ रहा है।

पेड़ कुछ नजर आ रहे हैं।

पीछे जंगल नजर आ रहा है।

लेडीज एक बुक लेके खड़ी आगे बढ़ रही है।

दरवाजा नजर आ रहा है।

इस कॉलोनी मे हमें नजर आ रहा है।

एक गाड़ी खड़ी हुई है और उसके पास एक बाइक खड़ी हुई है।

यह किसी की जिम की दुकान है।